कुर्सी लगा हुआ है। बच्चों का खेलने का सामान है जिनमें कुछ सामान बेचने पेड़ है मकान है। निचे में दरी बिछाया हुआ है सुंदर --

यह किसी का घर है यहाँ पर।